कुछ ठेले है ठेलो पे सब्जियां रखी हुई है फल है।

यहां पे एक भवन है भवन के आस-पास गमले रखे हुए हैं।

स्टोर में सामान भरा हुआ है स्टोर में कबड रखा हुआ है।

आस-पास और बहोत सारे मशीन रखी हुई हैं यह एक जिम है।